इसी सड़क दिखाई दे रही है सड़क की दोनों और हरे हरे पेड़ जोहे दिखाई दे रहे है छोटे छोटे पौधे लगे हुए है बड़े बड़े पेड़ उप्पर हरे भरे पत्ते दिखाई--

पीछे बराबर मे तिरुपति बालाजी की आकृति बनी हुई है पीछे ईसाई भगवान की और भी बहुत सारी तस्वीरें राखी हुई है और ये कुछ छोटी और बड़ी तस्वीर--

यहा पे एक टेबुल दिखाई दे रही है | जिस पर पीतल की मूर्ति रखी है | ये ओ के पीछे आपत्ति बनी हुई है आगे एक प्लेट राखी है| पीछे एक छोटी मूर्ति रखी हुई है।

यहा पर एक जूमर दिखाई दे रहा है जुमर पीले और सफ़ेद स्योन से बना हुआ है यहा बोत इसमे वीडस भी लगे हुए है जोकि नीले रंग के है।

दिखाई दे रही है ये एक लेस वाले की शॉप है जहा पर बोहोत सारी लेस है गोल गोल बंधी हुई है ये अलग अलग रंग की दिखाई दे रही है।

यहा पे कुछ प्रतिमाए लगी हुई है | ऊपर फर्श दिखाई दे रहा है | पीछे की दीवाल जो है पीले रंग की है खिरकी दिखाई दे रही है खिरकी पर जाली लगी हुई है नीचे और भी समान रखा हुआ है पीछे की तरफ ए_सी दिखाई दे रहा है | जोकि सफेद रंग का है।

बाहर सिडिया दिखाई दे रही है | सिडिओ के बाहर कई सारे मोटर साइकल स्कूटर खड़े हुए है।

बिल्डिंग दिखाई दे रही है जोकि पीले रंग की है | जिस पर खिडकीया लगी है खिड्किओ पर सीसे लगे हुए है आर तरफ जा रहे है यहा पर एक सीसे जोह वो नीले रंग के लगे हुए है।

यहा पर एक सफेद रंग का केबिन बने हुए है | जोकी जिस पर सामने की तरफ देखने पर कुछ बेड़स पड़े हुए है जिस पर नीले रंग की चादर बीछी हुई है नीचे का फर्श दिखाई दे रहा है।